ये हॉस्पिटल है हॉस्पिटल बहुत बड़ा है हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाई दे रहा है जीने हैं और--

स्टेज ज्यादा लग रहा है मंदिर ज्यादा लग रहा है और स्टेज कम लग रहा है।

ये नहर हैजो कि बहुत बड़ी नदी है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।

बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ और कुछ कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं।

ये एक पार्क है। पार्क में रोड निकली हुई है। पार्क रोड बहोत अच्छी बनी हुई है। पार्क में पेड़ लगे हुए हैं।

खेलते हैं और चढ़ते हैं बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं पार्क में छोटी-छोटी घास भी नजर आ रही है।

और यहाँ के सब लोग जो काम करते हैं वो कलर ड्रेस में ड्रेस में होते--

यह रोट बनी हुई है कुछ पेड़ लगे हुए हैं रोट के बस रेलिंग बनी होती है और रेलिंग --

ये एक मॉल है मॉल में दो डेमो बने हुए हैं जो कपड़ा पहने हुए हैं।

ये एक स्कूल बना हुआ नज़र आ रहा है जो कि फराल बना हुआ है इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं और बहुत--

तंबू लगा हुआ है येलो कलर का और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है लड़कियां साड़ी पहन लेना--

को जा रही है और पीछे मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है किड़की खाड़ी लगी हुई है।

ये एक बहुत बड़ा सा म मंदिर टाइप से बना हुआ है और बहुत भीड़ है मेला लगा हुआ नजर आ रहा है।

और चेयर चेयर पड़ी हुई है जो कि ब्लैक और ब्लू हैं।

दोनो पैर में चोट लगी हुई है एक पैर उठाए हुए हैं हाफ लोअर पहने हुए हैं पैरों पे मोजा पहने हुए हैं।